और यहाँ एक महाविद्यालय भी हैं ।

इस दुकान में अगरबत्ती से ले के बहुत तरह के सामान इस दुकान में मिलते है।

यह धोती खलता पहने किसी को हाथ से इशारा कट बुला रहे है।

वह बहुत ही छोटे हैं यहां लोग आए हुए --

इस प्लेस में बहुत सारे रूम बने हुए हैं।

इस बिल्डिंग में बहोत सारे लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं।

एक मिस्त्री लेट्रिंग का पेन बिठा रहे है।